यहाँ पे मुझे बहुत सारे पेड़ दिखाई देर रहे है पेड़ बहुत ही बड़े दिखाई दे रहे है यहाँ पे मुझे बहुत ही इलेक्ट्रिक वायर जाते हुए दिखाई दे रहे है जो लगबग पाच फिट दूर है।

तस्वीर में मुझे एक इ स्टेज दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक महिला खड़ी हुई है और वो अपने हिरों में फूल लगा के रखी है जिसे हम मोगरे का हार कहते है जो की सफ़ेद कलर का हो--

यहा पर आसमान मुझे बहुत ही नीला बन के दिखाई दे रहा है और ये तस्वीर फ़िल्टर द्व्रारा ली गई है या तस्वीर को फ़िल्टर किया गया है और ये देखने पर अच्छा लग--

'' यह तस्वीर में मुझे एक अ रोड दिखाई दे रहा है रोड के ऊपर मुझे बहुत सारे इक्वीपमेन्ट और यहाँ पे एरोप्लेन भी दिखाई दे रहें है। और यहाँ पर एक्सीस बँक का-- ''

मुझे खेत दिखाई दे रहा है खेत मे मुझे बहुत सारे प्लाट्स दिखाई दे रहे है और यहा पर एक एडवांस टेक्नोलेगी से पानी दिया जा रहा है जिसमे की पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है और पानी भी फसल को मिल जाता है पीछे की ओर देखने पर मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे--

तस्वीर मैं मुझे एक खेत दिखाई दे रहा है खेत मैं मुझे गोबी के पत्ते उगे हुए दिखाई दे रहे हेंगे और ये बहुत ही हरे-भरे दिखाई दे रहे है सामने देखने पर मुझे बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है और ये देख कर काफी शानदार लग रहा है।